बाहर में गाड़ी का वाइजर लगा हुआ है।

इसमें पर्दा लगा हुआ है जिसका कलर रेड एंड येलो है।

ये शायद कोई चिड़ियाघर की फोटो है क्योंकि ऐसे मगरमच्छ ओपन तो चिड़ियाघर में ही दिखते हैं।

इस बस के पीछे एक और बस लगा हुआ है।

मिलता है कुर्सी लगा हुआ है यहां सामने में।

जींस टी शर्ट पहने हुए जा रहे हैं।

और इसके पीछे का अ करकट से बना हुआ एक एक छननी है जिसके नीचे लोग बैठे हुए हैं।

यह एक क्लीनिक सेंटर है।

ये ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

जिसमे सभी गाड़ियों का लगभग एक्सीडेंट हुआ है ये कही पर स्टोर है टूटी हुई गाड़ियों का।